हमको इसमे एक पार्क दिख रहा है जिसमे की एक लड़का खड़ा है पार्क मे शायद फोटो खिचवा रहा हैं।

कोई फैक्टरी दिख रही है जिसमें नीचे एक जे_सी_बी खड़ा हुआ है।

हमको ये एक समोसे का ठेला दिख रहा है।

मजदूर काम करते हुए बोरियां अपने सर में लाद के दूसरे साइड पलटी कर रहे--

सामने दो बाइक खड़ी हुई है एक मेन गेट में खड़ी है और एक थोड़ी बगल में खड़ी--

मॉल का ग्राउंड एरिया दिख रहा है।

हमको इसमें एक गार्डन दिख रहा है जिसके बीच में शायद मेहंदी या हल्दी की सेरेमनी बनाई जा रही जाएगी।

आर_ओ की दुकान दिख रही है जिसके अंदर कई प्रकार के--

बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जैसे मन शांत रहता है।

अपना फ़ोटो खिंचने में लगा हुआ है।

कुछ दिख तो रहा है और नदी है खूब बड़ी पहाड़ है मौसम खूब अच्छा है और हमको यहां पे एक--

और इंची टेप लिए है अपनी कमर में खोसे हुए हैं और अच्छा लग रहा --

ये हमको कैट फिश दिख रही है जिसमें की एक दो--

तैतीस सेकंड लास्ट मेरे बच्चे हुए हैं जिसमें मैं इस समुद्र के बारे में बताऊंगा।